कट हेयर स्टाइल यह बच्चों की बहोत ही फैवरेट कट स्टाइल है उ बच्चे आजकल इसे ही उ ऊ --

कूलर टी.वी सिलाई मशीन आदि को आसानी से जोड़ सकते है और आटा वाली मशीन चक्की --

जो की भगवान जी के झूले मूर्ति और आरती वगैरा दिखाई दे रही है बहोत ही सुंदर --

बहोत ही अच्छा म-म प्रकृति का मौशम लग रहा है।

गाड़ी काली सफ़ेद रंग-बिरंगी गाड़ियाँ रखीं हुईं हैं और --

बहौत ही चम-चमाता हुआ नजर नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ का।

इस पिक्चर में एक कपडों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत से लोअर शूज और कोट --

और वन टू थ्री वन है जो सफ़ेद कलर की है एक रोशनी बिच में दोनों गाडियों के बिच में पड़ रही है।

बहोत ही जगमगाती हुई शुन्दर गाड़िया दिख रहीं है।

बहोत से पेड़े लगे हुए हैं और कुछ कचड़ा भी एकट्ठा है उ म बहोत ही --

एक का चारा बनाया गया है और ब-ब-ब -बहोत ही भूंकि है और उसको खाते हुए दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं बहौत से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है बहौत ही ऊंचाई पर कम से कम बिस फ़ीट --

इस फोटू में मैच दिखाई दे रह है जिसमें बच्चे बॉल खेल रहे है गर्लश बॉल खे अ-अ मैच खेल रहीं है।

इस पिक्चर में ओम जय माता दी विजय पुस्तक भंडार नामक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें --

कैरम बड़े वाले छोटे वाले म-रखे हुए हैं और बैटमिंटन भी रखे हुए हैं।

दाना चुभते हुए दिख रहा है वह हरे रंग का है और उसका मुँह पिले रंग का चोंच काले रंग की --

अच्छे से घुमा रहा है अ न शर्ट पर प्रेस हो रही है और बहुत ही सुंदर दुकान भी नजर आ रही है।

इस फोटो में अ-ए दो टेम्पो वाले खड़े हुए हैं और अपनी पिक्चर खिंचवा रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं।

अह अपनी ऐसा लग रहा है टेम्पू नया है और अपनी इस ख़ुशी के साथ और फोटू --

इस फोटो में बड़ी ही सुंदर-सुंदर मालाएं टंगी हुई हैं जो की कुछ चमेली के फूलों से बनी हुई हैं कुछ गेंदा के फूलों से।